ब्रिज काफी पतला और नैरो दिख रहा है दोनों साइड पर सेफ्टी नेट लगे हैं।

लेफ्ट साइड में बैलून बेचने वाले लोग हैं।

मौसम क्लॉउडी और रेनी लग रहे हैं गाड़ी गाड़ी गिली है।

स्टैचू के पीछे ब्लैक स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक लड़का स्टैचू के सामने खड़ा है।

उधर उठते हुए प्लेटफार्म पर बने हुए हैं नीचे खुला स्पेस है।

दूरी पर एक पेड़ पौधे और जंगल जैसे दृश्य हैं।

घरों की छत पर कपड़े सूख रहे हैं।

सब का एंट्रेंस ग्लास डोर वाला है।

रूम एक लार्ज वार्डरोब भी है एक स्टडी टेबल या टेबल भी लेफ्ट साइड पर है।

स्काई क्लियर और ब्लू है विथ हल्के क्लाउड फील्ड वेल मेंटेनेंस लग रही है ग्रास नीटली कट है।